ये एक बस स्टैंड है जहां पर एक रिक्शा वाला दिखाई दे रहा हैं।

बस के ऊपर एल.इ.डी. जलती हुई नजर आ रही है।

टाइल्स नीचे लगे हैं जो कि काफी सुंदर दिखाई दे--